इसके अलावा कुछ समान भरा दिख रहा है | एक तराजू दिखाई दे रहा है | पीछे के साइड में कुछ बोतल जमा के रखी हुई दिख रही है | लकड़ी के टेबल में एक फ्रीज दिखाई दे रहा है | साइड में बोतल दिखाई दे रही है | चप्पल पड़ी दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग बनी दिखाई दे रही है बिल्डिंग के ऊपर एक नीले सफ़ेद और पीले कुछ पोस्टर बना हुआ पेंटिंग करा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके अंदर इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा है कुछ लोगो बने दिख रहे --

बल्कि छत पे कुछ पंखे लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं नीचे के साइड में कुछ ड्रावर और बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां किसी बिल्डिंग का फोटो है घर का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके सामने एक गार्डन बना दिखाई दे रहा है पीछे कुछ बिल्डिंग बन रही हैं जिसकी खिड़की दरवाजे दिखाई दे रहे है।